यहाँ पत्थर की लॉन के रास्ते दिखाई दे रहे हैं।

यहां कुछ इमारत भी नजर आ रहे हैं।

यहां डंबल रखा हुआ नजर आ रहा है।

ईट के दीवार के बगल में बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जहां बहुत सारे लोग बाइक राइडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।

पोस्ट ऑफिस के बाहर बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ नजर आ रहे हैं तथा यहां का वातावरण बहुत ही अच्छा लग रहा है।

असिस्टेंट के बगल में बहुत सारे आदमी भी नजर आ रहे हैं।

एक व्यक्ति हाथ में बहोत ही बड़ा कटोरा पकड़ा हुआ है।

यह मॉल देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।

रास्ते के बगल में बहुत सारे लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँबगल में बहुत सारी इमारतें दिखाई दे रही हैं।

ऑटो में मशीन किसी वर्कशॉप में रखा हुआ है आर यहां बहुत लकड़ी के टुकड़े भी है।

यहां पारदर्शी पर्दे लगाए गए हैं जो मरीजों के लिए गोपनीयता बनाने में मदद करती है।